एक ठेला भी नज़र आ रहा हैं ऊपर आसमान सब बहोत अच्छे से दिखाई ड़े रहे हैं।

यह बच्चों के स्कूल है उसके नीचे में बहुत सारे बच्चें बच्चियां चलते नज़र आ रहे है और कुछ बच्चियां ऊपर में हैं और उसके खिड़की दरवाज़े सब --